इक बिल्डिंग पूरी दीवारों से चारों ओर से घिरी हुई है। इसके बीच में बहुत सारे बहुत मकान दिख रहे हैं। यहां पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं। यहां --

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जो मधिन है यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर पेट्रोल पंप बनाने के लिए अलग अलग बने हुए हैं ये ये काफी सुं--